पानी मे नाव भी दिखाई दे रही है जिसमे एक लड़का बैठा दिखाई दे रहा है आसमान सफ़ेद दिखाई दे रहा है कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

साल का एक मोमबत्ती लगा हुआ दिखाई दे रहा--